जिसने सफेद रंग की शर्ट पहन रखी है और काले रंग की जैकेट पहन रखी दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ काफी सारे पेड़ भी लगे हुआ नजर आ रहे हैं एक पक्षी भी उड़ता हुआ दिख रहा है।

इस गेट के बगल मे एक छोटा सा गार्डन भी बना हुआ दिखाई दे रहा हैजिस पर कुछ घास है और कुछ छोटे पौधे लगे हुए है।

लाइन से रैंप बने हुए है जिनपे काफी सारा सामान रखा हुआ नजर आ रहा है एक फ्रिज भी रखा दिखाई दे रहा है लाल रंग का दिख रहा है।

इसी जगह पर एक बडा सा सुपर मार्केट खुला हुआ दिखाई दे रहा जिसमे बाहर वाइट और ऑरेंज कलर का बोर्ड लगा हुआ है जिस --

यहा पर किसी फैक्ट्री के अंदर का द्रशय दिखाई दे रहा हैजहा पर काफी सारी मशीने लगि हुई नज़र आ रही है। इसमे--

किसी किले में किसी म्यूजियम का एक हिस्सा दिखाई दे रहा है जिस पर काफी सारे खम्बो से बनाकर इसकी छत बनाई गयी है दिवार पर काफी सूंदर आकृतियाँ बनी हुई है और कुछ मुर्तिया भी बनी हुई दिखाई दे रही है।

एक गेट पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है अंदर से काफी बड़ा म्यूजियम बना हुआ नजर आ रहा है गेट के दोनो तरफ तोप बनाई गई है।

किसी दुकान का एक रैक दिखाई दे रहा है जिस पर काफी सारे खँजे बने नजर आ रहे है इस रैक पर काफी सारा सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है ये एक स्टेस्नरी दुकान का रैक नजर आ रहा है।

इन दोनों गेट के बीच मे स्टेडियम इस का नाम लिखा हुआ है साथ ही जिले का नाम भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ एक और बड़ा सा पोस्टर चिपका हुआ नज़र आ रहा है अंदर की तरफ कुछ छोटा सा गार्डन भी लिया हुआ दिखाई दे रहा है।

इसी जगह पर एक बड़ा सा सावर बना हुआ दिखाई दे रहा है जिसके बीच में जो खम्बे लगे हुए है उसके ऊपर गुबंद बने हुए दिखाई दे रहे है इस जगह के अंदर कुछ लोग भी दिखाई दे रहे है कुछ बच्चे और कुछ औरते यहां घूमते हुए दिखाई दे रहे है अंदर --

इस गेट के बाहर के एक बाइक भी खड़ी हुई नज़र आ रही है और एक बड़ा सा पेड़ भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है अंदर कुछ लोग टहलते हुआ दिखाई दे रहे है अंदर भी कुछ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए नज़र आ रहे है।

इस बोर्ड के बगल मै एक बड़ा सा गेट भी लगा हुआ है जिसके ऊपर लैंप लगा हुआ नजर आ रहा है सामने की तरफ डिवाइडर बना दिख रहा है।